द्वार दिखाई दे रहा है। जिसमे ऊपर खिड्किया दिखाई दे रही है। हरीहर क्षेत्र सोनपुर मेला दो हजार उन्नीस भी उस पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमे एक नाव है दिखाई दे रही है नाव मे बहुत सारे तिरेंगे लगे हुए दिखाए दे रहे और भगवान के झंडे भी लगे दे रहे है तीन लोग के नारे खड़े हुए है।

दिखाई दे रहा है । जिसमे अंदर एक बुद्ध भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है । जो की येल्लो कलर की दिखाई दे रही है।

एक ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रहे-एक साइकिल भी दिखाई दे रही। कुछ बाइक भी दिखाई दे रही है। जेन्ट्स जो मुह मे कुछ डंडी जैसी लिए हुए खड़ा हुआ है।

टीचर दिखाई दे रही है उपर दीवार का कलर रंगीन दिखाई दे रहा है नीचे लाल कलर का दिखाई दे रहा है नीचे हरा दिखाई --

कुछ बच्चे बैठे है उनको सर पड़ा रहे है दो लड़का लड़की खड़े हुए है एक कपड़े पे नई एक लड़की खड़ी दिखाई दे रही है शायद पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जिसमे दिखाई दे रही है। सामने पानी की भी टंकी दिखाई दे रही कुछ पेड़ पौधे भी हरे भरे दिखाई दे रहे सामने मैदान दिखाई दे रहा है। जिसमे लोग चलते हुए दिखाई दे रहे है।